देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं छेन छेन से और टेल लग के हुए हैं और इसके लेवल लगे हुए हैं।

यहाँएक बेड पड़ा हुआ हैं ।

सफेद कलर की दीवाल है जिसके ऊपर--

स्कूटी और बाइक खड़ी हुई हैं तथा यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा हैं ।

सुंदर लग रहा है देखने के लिए--

इसमें मेजे पड़ी हुई है और मेजे पड़ी होने के बाद में भी--

यहा बहोत ही सुंदर लग रहा है देखने में--

बेडशीट पड़ी हुई है जो कि हरे कलर की है।

यहां एक स्विमिंग पूल लग रहा है।

जो की बहोत ही नीचे लगे हुए हैं यहां एक शॉप दिखाई दे रही है।

आदमी और एक औरत भी खड़े हुए हैं।